नमस्कार gchempaint में basic operations के tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम सीखेंगे
मौजूदा file खोलना
text add और edit करना
objects को select move flip और rotate करना
objects को वर्गीकरण और पंक्तिबद्ध करना
objects को cut copy paste और डिलीट करना
यहाँ मैं उपयोग कर रही हूँ
ubuntu लिनक्स os version 1204
gchempaint version 01210
इस tutorial के अनुसरण के लिए आपको निम्न के साथ परिचित होना चाहिए
gchempaint chemical structure editor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
नयी gchempaint application खोलने के लिए
dash home पर click करें
प्रदर्शित search bar में type करें gchempaint
gchempaint icon पर click करें
अब मौजूदा file खोलकर tutorial को शुरू करें
file menu पर click करें
open select करें और इस पर click करें
files और folders वाली window खुलती है
यहाँ से file का named प्रोपेन select करें
file खोलने के लिए open पर click करें
propane structure के नीचे कुछ text जोड़ते हैं
toolbox से add or modify a text टूल select करें
text tool property पेज खुलता है
property page क्षेत्र रखता है जैसेfamily स्टाइल size underline और कुछ अन्य
family font names की सूची रखता है
अब सूची में नीचे जायें
मैं family में से arial black select करुँगी
propane structure के नीचे display area पर click करें
आप green box में बंद टिमटिमाता हुआ cursor देख सकते हैं
compound का name प्रोपेन type करें
अब स्टाइल को bold italic से bold
text प्रोपेन को select करके bold italic पर click करें
मैं font size 16 तक बढ़ाउंगी
सूचि में 16 पर जाएँ
और इस पर click करें
text में बदलाव को देखें
आगे underline feature उपयोग करें
यह drop down सूची रखता है कुछ विकल्पों के साथ
none none single single
double double और low low
single select करें
अब text का color बदलें
text का default color ब्लैक है
color क्षेत्र में drop down arrow पर click करें
आप यहाँ भिन्न colors देख सकते हैं
मैं पर्पल select करुँगी
हम text की पोज़ीशन भी बदल सकते हैं
पोज़ीशन क्षेत्र100 से 100 तक range रखता है
अब देखते हैं text कैसे बदलता है
text select करें
mouse से अप arrow त्रिभुज पर click करें
text ऊपर जाता है
इसी तरह अगर हम down arrow त्रिभुज पर click करें तो text नीचे आता है
अब text को सामान्य स्थिति में लाएं
पोज़ीशन क्षेत्र में 0 type करें
और display area पर click करें
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
पहले tutorial का नियत कार्य खोलें
structures को nhexane और noctane label करें
text का font नेम font size underline और colour बदलें
आपका पूरा नियत कार्य इस तरह दिखना चाहिए
अब objects को move और select करना सीखें
tool box से select one or more objects tool पर click करें
pentane पर click करें
mouse button को छोड़े बिना इसे अलग position में खींचें
अब mouse button छोड़ दें
आगे object को rotate करें
object को rotate करने के लिए select one or more objects tool पर click करें
properties पेज tools रखता है
flip the selection horizontally
flip the selection vertically
rotate the selection
इन tools को उपयोग करने के लिए pentane पर click करें
rotate the selection विकल्प पर क्लिक करें
display area पर जाएँ और mouse को object के ऊपर रखें
mouse को clockwise और anticlockwise दिशाओं में घुमाएं
object के rotation को देखें
अब object को flip करना सीखें
अब पैंटेन structure को क्षैतिज के समान्तर flip करें
structure को क्षैतिज के समान्तर flip करने के लिए flip the selection horizontally tool पर click करें
यहाँ tutorial रोकें और अपने आप अपना flip the selection vertically उपयोग करें
अब objects को वर्गीकरण और पंक्तिबद्ध करें
objects के वर्गीकरण के लिए सारे objects को select करें
इसके लिए edit menu पर जाएँ select all पर click करें
या आप एकसाथ ctrl और a कीज़ दबा सकते हैं
किसी एक objects पर right click करें
context menu खुलता है
group and/or align objects option select करें
एक dialog box खुलता है
group checkbox पर click करें
align और space evenly विलकपों को अनचेक करें अगर ये selected हैं
ok button पर click करें
हम देख सकते हैं कि objects एकसाथ वर्गीकृत हुए हैं
अब objects को पंक्तिबद्ध करें
सारे objects को select करने के लिए ctrl + a दबाएं
किसी एक objects पर right click करें
context menu खुलता है
group properties विकल्प select करें
align checkbox पर click करें
align विकल्पों के पास dropdown सूची है
इसके पास objects को पंक्तिबद्ध करने के लिए कुछ विकल्प हैं
मैं left select करुँगी
ok button पर click करें
बदलाव देखें
यहाँ tutorial रोकें और objects को पंक्तिबद्ध करें आपके अपने अन्य align विकल्पों के साथ
अब cut copy और paste विकल्पों का उपयोग करना सीखें
edit menu पर जाएँ
यह basic edit विकल्प रखता है जैसे cut copy paste और clear
इन विकल्पों के लिए सामान्य shortcut कीज़ हैं
cut के लिए ctrl + x
copy के लिए ctrl + c
paste के लिए ctrl + v gchempaint में भी काम करेंगे
select one or more objects tool उपयोग करके एक या अधिक objects select करें
object पर click करें
cut के लिए ctrl + x दबाएं
display area में अलग position पर object को paste करने के लिए ctrl + v दबाएं
देखें कि जब हम object को cut करते हैं तो यह अपने मौलिक स्थान से मिट जाता है
आगे display area में अलग जगह पर object को copy और paste करें
object पर click करें copy के लिए ctrl + c और paste के लिए ctrl + v दबाएं
देखें कि जब हम object को copy करते हैं तो यह अपने मौलिक स्थान से नहीं मिटता
display area को clear करने के लिए सारे objects को select करें
सारे objects को select करने के लिए ctrl + a दबाएं
edit menu पर जाएँ
clear पर click करें
अपने मौलिक structures पर वापस जाने के लिए edit menu पर जाएँ
undo पर click करें
या ctrl + z दबाएं
object को मिटाने के लिए keyboard पर delete की का उपयोग करें object select करें
keyboard से delete की दबाएं
अब structure के भाग को मिटने के लिए eraser tool का उपयोग करना सीखें
toolbox से eraser tool select करें
mouse को किसी भी structures के पास रखें
structure का वो भाग red color में बदल जाता है
structure के red कलर वाले भाग पर click करें इसको डिलीट करने के लिए
अपना मौलिक structures प्राप्त करने के लिए बदलाव को undo करें
अब file को सेव करें
toolbar पर save the current file button पर click करें
इसके साथ हम इस tutorial के अंत में आ गए हैं
इसको सारांशित करते हैं
इस tutorial में हमने सीखा
कैसे मौजूदा file खोलें
display area में text कैसे add और edit करें
objects को कैसे select move flip और rotate करें
objects को कैसे वर्गीकरण और पंक्तिबद्ध करें
objects को कैसे cut copy paste और डिलीट करें
एक नियत कार्य की तरह eraser tool उपयोग करें और
noctane structure को npentane में बदलें
nhexane structure को ethane में बदलें
नियत कार्य का output इस तरह दिखना चाहिए
इस url पर उपलब्ध video देखें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
आई आईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद